एक जगह में पर बहुत सारे सब्ज़ी रखे हुए हैं एक बोरे में बहुत सारे हरी हरी भिंडी हैं।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है। जिसके बगल में लिखा हुआ है यहां ठहरने का उत्तम प्रबंध --

वहाँ पर एक औरत भी दिख रही है एक और मंदिर भी दिख रहा है।

और वहां पर बहुत सारे आदमी भी खरे हैं बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

बहुत सारा कपड़े को समेट कर अलमारी मे रखा गया है।

शीशे का एक बॉक्स भी हैउसमें भी बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं।

उस जगह पर ढाबा किचन भी लिखा हुआ है और उस जगह पर एक आदमी हेलमेट लिए हुए खरा है।

वहां पर क्रॉस लगा हुआ है और उसके बगल में बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

गेट के सामने में वेलकम मनीष भी लिखा हुआ है वहां पर रिक्शा भी है।

एक कार है कार में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

वहां पर गैस सिलेंडर भी है वहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

नीचे का ज़मीन में टाइल्स बिछा हुआ है दीवार में प्लास्टरा नही हुआ है।

स्टोर में बहुत सारे लेज है कुरकुरे हैं बहुत सारे झाड़ू भी रखे हुए है।

एक झूले पर एक बच्चा झूल रहा है और उस पार्क के पीछे में बहुत सारे पेड़ हैं।

चारों तरफ से समेट के जगह जगह पर कपड़े को रखा गया है।

उस जगह बहुत सारे पौधों में गेंदा का भी फूल लगा हुआ है उस जगह धामा भी है।

और उस दुकान में बहुत सारे पाइप हैं तार हैं रस्सी हैं धामा है बाथरूम का बेसिन है बहुत सारे तरह तरह के समान हैं।

वहां पर एक कुर्सी और टेबुल भी है कुर्सी का रंग काला है और टेबुल का रंग सफेद है।

और उसके बगल में दो चापाकल भी दिख रहा है उस जगह पर एक कूड़ेदान रखा हुआ है।

इस जगह पर घर बनाने का काम हो रहा है यहा पर मिस्त्री और लेबर मिलकर काम कर रहे है।